इधर सिटी कैफ़े है।

काफी इन सब भाई लोगों को दिक्कत हो रहा है।

और काफी अच्छा पार्क है इसको घेरा वेरा गया है पार्क बहुत सुंदर है पेड़ बहुत लगाये गए हैं और टहलने का भी खूब अच्छा लग रहा है काफी लोग यहाँ आते हैं टहलने के लिए सुबह शाम भीड़ लगी रहती है ।

और यहाँ सेंट थॉमस गिरजाघर के बनाया गया है।

ये ग्राउंड में लोग साईकल चलाते हैं खेलते भी हैं और सीखते भी हैं ये काफी बड़ा ग्राउंड है।

ये काफी अच्छे से ये मिस्त्री इसको ठेकेदार इसका बनवा रहा है इसका छत।

यो है स्टूडियो में एक आदमी फोटो खिचवाये हैं।